यह एक मंदिर के जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे पहले जाने का रास्ता है। बाहर में टेंट लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसा प्रोग्राम हो रहा है। एक इंसान है जो की स्कूटी के पास में खड़ा है। स्कूटी लगा हुआ है।

यह एक कॉलेज का फोटो है कैंपस है। अ कॉलेज यहाँ से दिख रहा है। पास में पेड़-पौधे हैं। सड़क किनारे से यहाँ फोटो लिया गया है।